और एक स्टेज दिख रहा है | पीछे पर्दा लगा है | ऊपर छत पर लाइट दिख रही है।

और ऊपर गेलरी दिख रही है खिड़कियाँ दिख रही है और नीचे गेट दिख रहा है और बहुत सारी पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हुई है।

और नीचे एक आदमी बैठा हुआ है उसके और एक फोटो भी लगा है और पाँच छे आदमी दोन दोनों साइड खड़े हुए हैं।